इस दृश्य में मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रही हूं।

बछड़ा दिखाई दे रहा है।

जहां पे मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ मैं कुछ दुकानों को भी देख पा रही हूं।

इस दृश्य में मैं एक रेलवे स्टेशन देख पा रही हूं।

जहां पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं।

जिसने सर पे टोपी लगा रखा है।

अंदर में बहोत सारे लोगों को देख पा रही हूं।